ये एक बहोत ही सुंदर ऑफिस बना हुआ है।

ये एक क्रोकरी की दुकान है।

बहोत ही सुंदर ये बनाए गए हुएं हैं।

पानी गया हुआ है और बहोत--

बहोत ही बड़ी पार्क है जो--